आपे वाइट कलर से लाइन भी ओढ़ी गयी है।

आजू में आजू-बाजू में कुछ पोल भी है।

बहोत सारा सामान रखा है रैक में।

एक लड़की दिखाई दे री है जो चेयर पे बैठी है उसके हाथ में एक मोबाइल हैं।

जो समुद्री तट पे खड़ा है।

हॉल में नीचे में सफ़ेद कलर की टाइल्स लगी हैं। ऊपर में सफ़ेद कलर --

चेर एटू दिखाई दे रहे हैं।

बुक डिपो के सामने एक बोर्ड लगा है। उस पे सुरेश बुक डिपो कर के लिखा है।

और कुछ बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही हैं।